मकान दिख रहा है बैठने के लिए चेयर दिख रही है सोफा सेट दिख रही है रंग बिरंगी फैन दिख रहा है।